दे रही है और नीचे यहां पर बाइक खड़ी नजर आ रही है।

दिखाई दे रहा है जहां पर सोफा लगा हुआ है और दीवार पर एक पेंटिंग बनी नजर --

हैं यहां पर बोर्ड पर स्पीड --

यहां पर खिड़की और दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी के सर पर टोकरा नजर आ रहा है पीछे तीन चार औरतें यहां पर दिखाई दे रही हैं।

जहां पर टेबल्स पर कुछ फाइल्स रखी नजर आ रही हैं ऊपर देखें --

देखिएगा कलकी जी का मंदिर भी लिखा दिखाई दे रहा है।

यहां पर बोर्ड पर प्रवेश निषेध लिखा हुआ है सामने यहां पर एक बिल्डिंग दिखाई दे --

ये और यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

दीवार पर यहां पर बड़ा सा बैनर ल--

दिखाई दे रहा है और पास में यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ना मुझे और बाहर गेट भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक लड़का मोटरसाइकिल चलाता दिखाई दे रहा है आसपास यहां देखिएगा कुछ गाड़ी भी नजर --